जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं ये एक कोचिंग है।

यहां पर गाइस आप देख सकते हैं यहां पर एक--

अंदर पीले कलर का है पीले क्या वाइट कलर का गेट है।

और उसके साथ में एक सबसे खड़ा है जिसका चेहरा ब्लर हो गया है और इसका गेट इतना गंदा हो रहा है कुछ पूछो मत।

आप यहां पर देख सकते हैं गाइस कि मैं--

और बगल में ग्रीन मतलब येलो कलर की कुछ है और बीच में वाइट कलर का कुछ पट्टा है।

और साइट में यह क्या मालूम ब्लैक कलर का क्या है गाइस जो हम बता नहीं सकते आपको--

कटल और कटल के बगल में ये ग्रीन कलर की--

और जो एक बोट लगा है इस साइड का वा वाला--

जिस पे कुछ रेड कलरो में कुछ लिखा आधार कार्ड का--

ये यहां पर गेट भी है लोहे का और लोहे की जाली भी--

जो फूल रहते हैं उनका रेड कलर है गाइस गुलाब के फूल है वो--

एक यहां टेबल है उस पर रेड कलर की वॉल और ब्लैक और वाइट --

यहां पर आप गाइस देख सकते हैं यह कुछ दुकान है।

जो गेट उनमें से हम आराम से निकल सकते हैं तो आप देख सकते हैं गाइस यहां पर गेट तो मैंने बता ही चुका था आपको और कुछ बताने लायक नहीं --

जैसा कि गाइस आप देख सकते है।

तो यहां पर एक बिल्डिंग है जो बहुत बड़ी दिख रही है गाइस और कुछ भी--